यहा एक बजार है बजार मे दुकाने है सड्को पर लोग चल रहे है और एक --

इधर फिशा रखी है चादर पर मलिया रखी हैवे मछलिया बेचने का व्यापार कर रही है।

और पिछे कुछ खुर्चिया रखी है सामने तीन व्यक्ति खड़े है तीनों व्यक्तियोने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे है।